ब्लु कपडा रखा है ग्रीन कपडा रखा है टाइल्स लगे है व्हाईट कलर के पीछे रेड और ऑरेंज कलर के शर्ट पहने हुए--

नीचे बाइके खड़ी हुई है एक्टिवा खड़ी हुई है जिसपे झंडे लगे हैं इंडिया के| बाहर एक आदमी खड़ा है फिरोज़ी कुरता पेहेन कर और एक लड़का खड़ा है रेड शर्ट में।

ये रोड का फोटो है ऑरेंज और ग्रे कलर के बोर्ड पर रेनॉल्ट लिखा हुआ है।

ये एक मूर्ति का फोटो है जो वाइट कलर की है वाइट मार्बल लगे हैं।

माला पहने हुए हैं गेंदे की पीछे पेड़ लगे हैं बड़े-बड़े रेड कलर की बिल्डिंग --

एक में नासपती रखी है डलिया में एक डलिया में सेब रखे है एक में रेड मेंअंगूर रखे है संत्रे रखे है गोल्डन पन्नी से कुछ चीज पैक है।

नीचे एक्सक्लूसिव शोरूम लिखा है एंड ब्राउन कलर का गेट है।

ये एक पार्क के अंदर का फोटो है। जहाँ एक लड़की झूला झूल रही है। एक झूला पकड़ कर खड़ी है।

यह एक रेसटूरेंट के अंदर का फोटो है जहाँ पर एक वेटर खड़ा हुआ है कुछ लोग बैठे हुए है एक स्काइ ब्लू टॉप में लड़की बैठी हुई है।